पे बिजली की तार भी दिखाई दे रही है और कुछ पोस्टर वगेरा भी लगे हुए है यहाँ पे रोड भी दिखाई दे रहा है और निचे जमीन भी दिखाई दे रही है |

यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रीन है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पे मूर्तियाँ भी बनी हुई दिखाई दे रही है |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

पे रखे हुए है | यहाँ पे एक बोड़ी भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक फैन भी लगा हुआ है | यहाँ पे एक ऐ.सी. भी लगी हुई है और आलमारी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ डबिया रखी है |